पिक्चर में सामने एक दीवार दिखाई पड़ रही है जो की कमरे की तरह दिखाई पड़ रहा है दीवार का कलर ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है सामने कुछ सोफ़े दिखाई पड़ रहें हैं सोफ़े का कलर ऑरेंज कलर और ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है।

एक हाथ दिखाई पड़ रहा है जो की पिंक कलर और ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है| उसके हाथ में ये फूल है जो की व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है| सामने एक रोड जैसा दिखाई पड़ रहा है जो की ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है| सामने कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं जो ग्रीन कलर और ब्लेक कलर में दिखाई पड़ रहे हैं और उनके पत्ते भी दिखाई पड़ रहे हैं जो की पिंक कलर में दिखाई पड़ रहे हैं।

इस पिक्चर में सामने एक कमरा जैसा दिखाई पड़ रहा है जिसकी दीवार गोल्डेन कलर में दिखाई पड़ रही है उस पर शीशे लगे हुए हैं शीशे तीन बड़े-बड़े दिखाई पड़ रहें हैं जो की ब्राउन कलर की बार्डर के साथ लगे हुए तीन कुर्सियाँ भी दिखाई पड़ रही है जो की ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रही है साइड में एक टेबल भी रखी हुई है।

सामने एक जानवर भी दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है नीचे कुछ घास दिखाई पड़ रही है जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है सामने कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं जो कि ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहे हैं।

सामने एक अलमारी जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि कई खंडो मे बंटा हुआ है| सामने कुछ कपड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं जो की टंगे हुए हैं।

सामने एक शटर दिखाई पड़ रहा है जो की ग्रीन कलर मे दिखाई पड़ रहा है जो की सभी बंद दिखाई पड़ रहे हैं| एक शॉप दिखाई पड़ रही है वहाँ पे कुछ लाइट जल रही है वहाँ पे एक खड़ा हुआ साइड में कुछ बॉक्स रखे हैं जो कि व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहे हैं| सामने एक गाड़ी भी दिखाई पड़ रही है नीचे जमीन दिखाई पड़ रही है जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है ।

सामने एक शॉप है एक टेबल जैसा नीचे दिखाई पड़ रहा है जिस पर काँच का लगा हुआ है| उसमें बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं| नीचे एक कार्पेट बिछा हुआ ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है| सामने एक दीवार दिखाई पड़ रही है वहाँ पे कुछ डिब्बे रखे हुए हैं| डब्बो का कलर व्हाइट है| सामने एक शीशा जैसा दिखाई पड़ रहा है।

नीबू जैसा बना हुआ है जो की ऑरेंज कलर और ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है| सामने एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पास एक ठेला दिखाई पड़ रहा है जिसमें व्हाइट कलर में कुछ रखा हुआ है।

मूर्ति दिखाई पड़ रही है मूर्ति का हाथ जोड़े हुए है| मूर्ति का कलर गोल्डेन कलर में दिखाई पड़ रहा है और हरे कलर में दिखाई पड़ रहा है| बगल में एक दीवाल दिखाई पड़ रही है दीवाल का ----

सामने एक फ्लावर जैसा भी दिखाई पड़ रहा है जो की पिंक कलर मे दिखाई पड़ रहा है पीछे कुछ पेड़ भी लगे है।

जैसा दिखाई पड़ रहा है| सामने एक बेंच जैसा दिखाई पड़ रहा है उसपे एक इंसान लेटा हुआ है| उसने एक आदमी का हाथ पकड़ रखा है| सामने लाइट भी दिखाई पड़ रही है सामने एक खिड़की दिखाई पड़ रही है जिसमे काँच जैसा दिखाई पड़ रहा है| सामने एक आदमी और खड़ा है उसने बनियान पहन रखी है| एक मशीन के पास एक आदमी खड़ा है।